यहां पर दो चार कर्टन भी दिखाई पड़ रहे हैं जिसका रंग पीला है।

जैसे नीला पीला अथवा लाल--

सामने कि ओर ही कई सारे तौफे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक कपड़े की दुकान का दृश्य है जिसमें कई सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

फर्श का रंग सफेद है उसके पीछे एक लाल कलर का पाइप भी दिखाई पड़ रहा है।

जैसे लाल उजला काला अथवा नीला।

यहां पर एक सीट का कवर भी दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग काला और लाल है।

ये एक रोड़ के किनारे का दृश्य नजर आ रहा है।

उन झूलों के ऊपर दो बच्चे भी बैठे दिखाई पड़ रहे हैं।

उनका रंग हरा पीला नीला अथवा ब्लू है यहां पर कई सारे।

पीछे की ओर एक कुर्सी भी दिखाई पड़ रही है जिसका रंग भुरा है।

ऊपर की ओर एक कई सारे गुब्बारे दिखाई पढ़ रहे हैं।

इन्होंने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

ये एक मैरिज हॉल का दृश्य है जिसमें दो कुर्सियां दिखाई पड़ रही हैं।

सामने की ओर कई सारे बैलून दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पर एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है जिसका रंग लाल है।

इसके ऊपर विनोद आर्ट्स पेंटर्स एवं पेंटर्स लिखा हुआ है।

सामने की ओर एक छत भी दिखाई पड़ रहा हैं जिसके ऊपर से लाइट आ रही हैं।

ये एक कार के पिछले हिस्से का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

यहां बुक का रंग नीला पीला हरा लाल अथवा उजला है।